और कई सारे पेड़-पोधे है। यहाँ पर कुछ फूल के गुलदस्ते रखे हुए है। कई यहाँ बिल्डिंग के बाहर एक कुछ पोस्टर लगे है कई सारे |

सब ने मास्क लगा रखा है एक अंकल ने मास्क नहीं लगा रखा है।